देखो यहां पहाड़ दिख रहा हैऔर काला पहाड़ है पूरा और ऊपर से पानी गिर रहा है पूरा हरा है ऑउट साइड पूरा हरा हैपानी बहुत तेज़ी से गिर रहा है सफेद पानी है।

अन्दर कुछ चट्टान के बिच में मंदिर दिख रहा है जहा दो फोटो भी है और एक त्रिशूल गड़ा हुआ है जहा पे एक ग्रिल लगी हरिल कलर की ये पत्थर ऑरेंज कलर के दिख रहे है।

यहाँ पे मेरे को एक मंदिर दिख रहा हे छोटा सा और वह पे एक टेबल भी है।

यहाँ पे मेरे को एक टेंट दिख रहा है यहाँ पे हरी म्याट लगी चन्नीवाली यहाँ पे एक लाइट भी जल रही है और बाजु में एक घर भी और यहाँ पे लाइन से पौधे लगे है छोटेवाले और यहाँ पे घास लगी है छोटीवाली और एक पेड़ भी दिख रहा है मेरे को।

बिलकुल यह मैदान जहा सादी हो रही है यह पर टेट भी लगे है यह पर घर दिख रहा है मुज को कोय मरकरी भी लगी हैऔर सोलर पेनर भी लगा है उअपर यहा पर एक अंदर जाने का रास्ता भी दिख रहा है यहा पर कुछ पाठी भी लगी है।

यहा पर येलो और रेड कलर का लगे है रिबिन और बलुंस भि बहुत सारे है फोटो मे माला है भगवान जी की कोम्प्यूटर भि दिख रहा है वहा पे भी यह ब्लैक सिट दिख रही हैएक नील हैऔर यहा पर येलो है।

मेरेको यहां पे एक पोस्टर देखने का कहीं यहां पर मेंन गेट अंदर जाने का दिख रहा है मेरे को और यहां पर बाजू में इंसान खड़ा भी है यहां मरकरी लगी एक छोटी सी गेट के सामने और मैरेको तार दिख रहा है जिसमें लाइटिंग लगी है।

और यहाँ पे मेरे को पहाड़ टाइप के दिख रहे है टापू और साइड में मेरे को पहाड़ टाइप के दिख रहे है और यहाँ से मेरे को रेत दिख रही है रेत और गिट्टी दिख रही है हल्की सी और यहाँ पर भी गिट्टी डली है।